एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

कई सारी जो हैं वो बाइक्स खड़ी हुई हैं।

बाहर कुछ सामान रखा हुआ है गत्ते के डिब्बों में।

यहां पर काई सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर लिखा है ब्लू सिंगटन।

सामने एक पहाड़ भी दिख रहा है।

एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने अपने गले में रुमाल बांध रखा है।

और सोफा जो है वो सिल्वर और लाल रंग का है।

तथा एक बड़ा जो है वह कंप्यूटर भी पड़ा है।

आगे एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है ग्रे कलर की--

छत में जो है वो काफी सारी लाइट्स लगी हैं।